यहां पे दो तीन खिड़कियां भी दिखाई दे रही है यहां पे ये दो स्पीकर भी दिख रहे हैं।

ये एक पेट्रोल पंप का फोटो है यहां पे ऊपर एच_पी लिखा हुआ है।